डिस्को के अंदर बहुत सारे लड़की है और एक बच्ची है।

उपर में कुछ काले रंग के तार हैं एक उजला रंग का पाइप है।

हॉल के अंदर बहुत सारे बेंचेज रखे हुए हैं।

रूम के अंदर एक ए_सी है जो उजला रंग के है।

होटल के दीवार पे झारखंड चीकेन लिखा हुआ है।

यहां पे एक छपरा है जिसके ऊपर लोहे का काले रंग का डंटा लगाया हुआ है और बहोत सारे रस्सी बान्हे हुए--

पीछे में भी बहोत सारे बॉक्स रखे हुए हैं यहां लाइट रोशनी आ रही है।

एक यहां सिलेंडर है जो हरे रंग का है और एक लाल रंग का है।

प्लास्टिक के अंदर कपड़ा रखा हुआ है।

होटल के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिस पे ताज लिखा हुआ है और बहोत सारे खाने के चित्र बने हुए हैं।

नदी के तट पे चार पांच लकड़ी के डंडे हैं और यहां बहुत सारे प्लास्टिक और कुछ कचड़े रखे हुए हैं।

स्टेज के ऊपर एक मंडप है जिसके नीचे शादी हो रहा है।

यहां पे बच्ची है कुछ बुजुर्ग आदमी है कुछ यहां लड़के हैं लड़की है।

एक माइक है और बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं।

यहां पे धूप की रोशनी नीचे जमीन पे आ रही है।

यहां एक टी_वी रखा है जिसमें गणेश जी का फोटो है।

जिसके ऊपर दो लाल रंग के तकिए लगे हुए हैं।

यहां बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े हैं।

यहां पे एक टेबुल है जिसके ऊपर एक यू_पी_आई का क्यू_आर कोड रखा हुआ है।

दुकान के बाहर में कुछ नीले रंग के ड्रम रखे हुए हैं और बहोत सारे इधर बक्से रखे हुए हैं।

इधर बहुत सारे पेड़ है ऊपर में आसमान है यहां लाइट जल रहा है।

इस दृश्य में एक आदमी है जो अपने हाथ में फोन लेकर फोटो खींच रहा है।

ऊपर में कुछ रस्सी में प्लास्टिक के चमकीले चमकीले पदार्थ लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर एक टेबुल रखा हुआ है।